कार खड़ी हुई है और ये कच्चा रोड है। ऊपर वायर भी है और पेड़ भी और यहाँ पर पेड़ भी है कुछ।

ये एक बंदा पुश अप्स मार रहा है बेलून पे रखते पैर और आधे जिम का सेटअप रखा हुवा है।